ये यहां पे है यहां पे फ्रिज ए_सी लगा हुआ है यहां पे टाइल्स व्हाइट कलर का है।

आने जाने वाला संदेश या यहां से यहां से मिलता है ये लाल कलर का है यहां पे।

यह एक फोन का दुकान है यहां पे ब्लूटूथ है यहां पे--

यह बहोत अच्छा लग रहा है यहां पे टाइल्स से ब्लैक कलर का टाइल्स --

यहां पर एक आदमी है जो दूसरे कलर ।

यह एक आरती के यह एक आरती इंटरप्राइजेज है यहां पे मशीन ओशिन लगा हुआ है।

अच्छा-अच्छा फोन मिलता है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे ऊपर बोल लगा हुआ है जो वाइट कलर का कैमरा है जो ब्लैक कलर का यहाँ पे।